हमें छोटे छोटे पौधे लगाए गए दिख रहे हैं कुछ बड़े पौधे भी नजर आ रहे हैं और चारों तरफ--

यह एक कार्यालय है कार्यालय के बाहर अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय कुमार बाग पश्चिम चंपारण लिखा हुआ है।

आलू की भरी हुई टोकरी नजर आ रही है इस टोकरी में बहोत--

बहोत ही भयंकर सा घड़ीयाल नजर आ रहा है।

औड़ चारों तरफ लाइट्स लगी हैं काफी शांति का माहौ--

इस नदी के किनारे पर एक व्यक्ति ब्लैक कलर की शर्ट में बैठे हैं।

सभी लड़कों के यहां पे पैंट्स लोअर्स रखे हुए हैं ऊपर कुछ फैंस दिख--

हमें पोस्टर्स एयरटेल पेमेंट बैंक के दिखाई दे रहे हैं और एक बेंच लगी हुई है बैठने के लिए और यहां पर--